यहां घर के पीछे एक लोहे की बड़ी पाइप लगी हुई है और यहां पे--

का रंग काला और केसरी रंग और लाल रंग--

वहाँ पे बड़े-बड़े झाड़ है और यहां पे एक बड़ा सा चट्टान है और वहां बीच में से पानी आ रहा है।

और चट्टानों के बीच में पानी आ रहा है।

दो छोटे चट्टानों के बीच में तीन लोग खड़े हुए हैं।